सामने में एक आदमी खड़ा है। ये किसी सेलून में खड़ा है। यहाँ पर एकाद आदमी और नजर आ रहा है। बैक में --

यह एक पार्क है। पार्क के बीच में कुछ रास्ते बने हुए है। राइट साइड में कुछ पौधे लगे हुए है। कुछ मिडिल साइज के पौधे है कुछ --

ऊपर में उम पोस्टर लगा हुआ है। पोस्टर काफी महंगा और सुन्दर दिखाई दे रहा है।

सामने में एक गेट भी नजर आ रहा है। गेट के नीचे कुछ सीढियां बनी हुई है। बगल में एक गेट और नजर आ रहा है। वहाँ पे एक आदमी खरा है।

यहाँ पर एक दो आदमी और नजर आ रहे है जिन्होंने हाफ टी-शर्ट और हाफ पैंट पहन रखी है।

जंगल में पीले रंग का मिट्टी नजर आ रही है। यहाँ पे छोटे-बड़े भी पेड़-पौधे नजर आ रहे हैं। ये काफी हरे-भरे पेड़-पौधे हैं।